इस तस्वीर में कुछ मकाने भी दिख रही है।

यहां पर एक खिड़की भी दिख रहा है।

जिस पर एक हरे रंग के पोस्टर में झारखंड ट्राईबल डेवलपमेंट सोसाइटी लिखा हुआ है।

प्रोजेक्टर में इंडिया का मैप दिख रहा हैं।

यहां पर एक लोहे का पिलर दिख रहा है।

यहां पर जमीन में टाइल्से लगी हुई है।

इस बिल्डिंग में दरवाजे और खिड़कियां लगी हुई है।

यह दिन के समय का तस्वीर है।

इस तस्वीर में एक प्लेग्राउंड दिख रहा है।

यहां पर बहुत सारे क्यूब और क्यूब्वॉयड दिख रहे हैं।

इस ग्राउंड में एक आर्मी वैन लगा हुआ है।

टेंट पर एनुअल एथलेटिक मीट लिखा हुआ है।

इस ग्राउंड में कुछ विद्यार्थी भी दिख रहे हैं।

यहां पर एक बाउंड्री बना हुआ है जिस पर रंग बिरंगी लाइटे बनी हुई है।

यहां पर एक काउंटर में तरह तरह की चॉकलेटे रखी हुई है।

टोकरियों में गाजर लौकी बैगन आदि बहुत सारे सब्जियां दिख रही है।

इस दुकान में एक वजन मापने का मशीन रखा हुआ है।

इस कोचिंग में एक पंख लगा हुआ है।

गेट के ऊपर एक लाल रंग के पोस्टर में बोकारो योग केंद्र शांति दर्शन लिखा हुआ है।

इस तस्वीर में एक एयरपोर्ट का रनवे दिख रहा है।

यहां पर एरोप्लेन में इंडियन एयरलाइन लिखा हुआ है।